यह घर काफी बड़ा है। यह घर के बगल मे एक बगान है जो काफी हरा-भरा है यह घर भी बहुत बड़ा है। इस घर मे बहुत सारे कमरे है इसमें बहुत सारे --

होलडिंग मशीन है यह आदमी यह गाड़ी को होलडिंग कर रहा है यह गाड़ी बहुत ही साफ़ हो गया है इसे होलडिंग किया जा रहा है यह मशीन काफ़ी अच्छा होता है।

पेड़-पौधे हैं ई झरना को लोग देखने दूर-दूर से आते हैं और झरना में लोग आकर स्नान करते हैं और यहाँ बहुत सारे आनंद उठाते हैं।

यह एक डैम है जहाँ आदमी घूरने आते हैं फोटो क्लिक करते हैं मोज-मस्ती करते हैं । घूमते हैं बुलते हैं सब लोग फोटो क्लिक करवाते हैं । यह डैम बहुत अच्छा है नदी है यहाँ पानी रहता है बहुत ।